सभी लोग सैम कलर के कपड़े पहने हुवे दिख रहे है सभी का रंग लाल है ।

जिसमें बहुत सारी छोटी-छोटी मछलियां सफेद रंग की दिख रही है । मछली छोटी-छोटी और मरी हुई है।

ये अस्पताल मानो सरकारी प्रतीत हो रहा है।

इस दृश्य में दिखाई जाने वाली तस्वीर एस_बी_आइ बैंक के ए_टी_म की प्रतीत हो रही है। जिसमें एक आदमी पैसा निकाल कर ए_टी_ म से बाहर आ चुका है।